इस पिक्चर में हमें तेज नारायण कॉम्प्लेक्स --

बिल्डिंग का एक सीन नजर आ रहा है जहां पे हमें चारों साइड से--

बहुत सारी बिल्ड खिड़कियां और कुछ ए_ सी_ भी नजर आ रही हैं।

इस इमेज में हमें एक मेले का सीन नजर आ रहा है जहां पे हम एक झूले को देख सकते हैं जो कि छोटे बच्चों के लिए बनाया गया है।

ये झूला एक रेल गाड़ी के जैसा है जिसमें हमें चार डिब्बे--

एक इंजन के साथ देखने को मिलता है जिसका--

टेबल से सजाई गई है जिसमें से राइट हैंड --

होटल के लॉबी को देख रहे हैं जहां पे लोग--

ये एक गोल्डन के अं ये होटल के अंदर पूरा हमें गोल्डन - गोल्डन लाइट और वाइट कलर की लाइट और ए‌‌‌‌‌ ‌_सी भी देखने को मिल रहा है।

खरीदारी करते हुए दिख रहे हैं यहां पे हमें कुछ।

इस शॉप के स्टाफ भी दिख रहे हैं जोकि वाइट और--

क्लास के रूम को देख रहे हैं जहां पे हमने राइट हैंड साइड में--

ऊपर हमें लाइटनिंग और पंखे और यहां पे ब्लैक कलर की बहुत सारी चेयर भी रखी हुई हैं।

बोर्ड नजर आ रहा है जो कि एक कार सर्विस की दुकान है।

यहां पे बाहर हमें एक रेड कलर के--

स्कूटी खड़ी हुई नजर आ रही है जिसमें से ये गोल्डन और ब्लैक कलर की स्कूटी है जोकि--

चाक से बने सर्कल भी नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में हम एक स्टडी लाइब्रेरी देख रहे हैं।

आश्रम के बगल में लगाया गया है।

इसमें हम बहुत सारे पेड़ भी और--

और एक ठेला भी रखा हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे हम एक बच्ची को देख सकते है दूर जो कि पिंक कलर की ड्रेस पेहनी है यहाँ पे दो लोग और बैठे हुए हैं।

गोल्ड डोजो जिम का लोगो देख सकते हैं जो किसी रिसेप्शन पे--

इसके साइड में ही हमें एक ब्लैक कलर का टेलीफोन नजर आ रहा है और इसके दो माउस और दो कीबोर्ड हैं।

इस इमेज में हम एक पेट्रोल पंप का सीन देख रहे हैं।

फंक्शन का एक सीन देख रहे हैं जहां पे बहुत सारी चेयर लगाई गई हैं जिसमें बहुत सारे छोटे-छोटे बच्चे और उनके पेरेंट्स बैठे हुए नजर आ रहे हैं यहां पे हमें तीन--

सीन देख रहे हैं जहां पे हमें अलग-अलग तरीके के ब्रांड्स की शॉप नजर आ रही है जिसमें से --

इस पार्क में हमें बहुत सारे पेड़ भी नजर आ रहे हैं जिन पे चूना लगाया गया है और यहां पे बहुत सारे--

बोर्ड नज़र आ रहा है जोकि चैनेल रोड --

इस इमेज में हम एक आदमी को--

इसने अपने हाथ में एक वैक्यूम जैसा कुछ--

इस इमेज में हम इस मैदान में एक बड़ी सी लाइट को देख सकते हैं जोकि--

जोकि बाहर से इसका इमेज लिया गया है।

सीन है यहाँ पे हम एक आदमी को एक लैपटॉप के कीबोर्ड पर टाइपिंग करते हुए देख रहे हैं।

इस दीवार पे हमें एक कैमरा और एक प्लग भी नजर आ रहा है।

वाइट और रेड कलर के बलून को सजाया गया है।

का नजर आ रहा है जहाँ पे हमें पूरा ब्लैक एंड वाइट और सिर्फ ग्रीन कलर और येलो कलर ही नजर आ रहा है इस इमेज में यहाँ पे हमें --

लाइटनिंग नजर आ रही है इस--

प्रिस्क्रिप्शन लिखते और लोगों को बांटते हुए देख रहे हैं जिसने अपने गले पे एक--

एक बी_ पी_ नापने की मशीन भी रखी गई है।

इमेज देख रहे हैं जहां पे हम एक पादरी--

नमन करते हुए नजर आ रहा है जिसने वाइट कलर का--

सरारा टाइप पहना हुआ है इसके सामने हमें बहुत सारे लोग--

फ्लेग को सम्मान दे रहे हैं।

डिस्ट्रिक्ट ऑफिस का एक बोर्ड नजर आ रहा है जोकि स्काई ब्लू कलर का है।

बिछाई हुई नजर आ रही है यहां पे हमें बहुत सारे गेंदे के फूल की लड़ियां भी जोकि सजाई गई हैं ग्रिल पे।

फ्लावर पोट की दीवार भी देख सकते हैं।

दुल्हा दुल्हन के फोटो लेते हुए नजर आ रहे हैं यहां पे एक पंडित जी हैं जिन्होंने--

डेयरी नाम का एक डेयरी शॉप देख सकते हैं जिसके नाम में बगल में हमें एक बेकरी शॉप भी नजर आ रही है।

इस डेरी पर बहुत सारे लोग नजर आ रहे हैं जिसमें से कुछ लोगों ने टोपी पहनी हुई है।

स्कूटी और बाइकों को ल पार्क देख सकते हैं यहां पे हमें एक थ्री व्हीलर ऑटो भी नजर आ रहा है।

पार्क का सीन देख रहे हैं जोकि किसी--

जिसमें हम ब्लैक एंड वाइट कलर के कुछ--

पूरी तरह से जालियों से घिरा हुआ है इधर-उधर यहां पे हम बहुत सारे नेट को भी देख सकते हैं इधर-उधर।

और कुछ इलेक्ट्रिक तार भी इधर-उधर गई हैं।

और एक मयूर का स्टैचू भी नजर आ रहा है छोटे-छोटे।

ऑन करके ये आदमी यहाँ पर बैठा हुआ है।